इसके अंदर साबुन वगैरा रखी है किराना कुछ बोतले रखी हुई हैं शैम्पू की सामने एक टेबुल है टेबल पे कैंची रखी हुई है एक ट्रे रखी हुई है स्टील की।

खंबा लगा हुआ है वाइट कलर की लाइट लगी हुई है इस खंबे के अंदर--